जो के औरतो के सेक्शन का दृश्य है। जहां सूट सलवार कुर्ती समीज दुपट्टा आदि चीजें मिलती है।

वहां सामने एक राम सीता लक्ष्मण भरत इनकी तस्वीर लगी हुई है तो उनकी पूजा करते हैं ।

यह द्रश्य एक मॉल का द्रश्य हैजहाँ कपड़े मिलते है और यह द्रश्य जस्ट एंट्री का द्रश्य है जहां छोटे लड़कों का कपड़ा है बॉयज का।

सीधा स्विमिंग पूल में जाया जा सकता ग अक्सर गर्मियों के छुट्टियों मे लोग यहाँ इंजॉय करने आते हैं।

यह दृश्य एक रोड के किनारे लगे हुए स्वेटर का स्वेटर की दुकान का दृश्य है जहाँ थोड़े सस्ते दाम में अच्छे और गर्म करने वाले स्वेटर मिलते हैं।